यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिस पे प्रेस्टाइल लोंडरी लिखा हुआ है और यह लोंडरी कपडे के लिए यूज़ होती है जो की एक अ जो की एक ऊपर --

छत पे बहोत सारे सरिया को बिछाया हुआ है जो कि आयत के रूप में बिछाई गई हैं। एक सरिए को दुसरे सरिए से बाँधा गया है और जो लेबरस हैं वो --

जो ब्रिज है ब्रिज के ब्रिज के पीछे बहोत सारी ब्रिज पे बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं और पीछे --.

मंदिर में एक खिड़की भी है। मंदिर का दृश्य यह पीछे की ओर बना हुआ है जो की मार्बल ग्रेनाइट से बना हुआ है।

खड़े हुए है बिल्डिंग में खिड़कियाँ हैं उस पे भी लोग खड़े हुए हैं बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग में --

रास्ते पे कुछ कच्ची सड़क तथा कुछ पक्की सड़के दी हुई हैं और इसमें बहोत बड़ी सी नदी तथा नहर झरना की तरफ बह रही है। झरना.--